यह एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे बहुत सारे अटैची रखे हुए है।

ये हेलिकॉप्टर है जो उड़ रहा है जो कि ग्राउंड में यहां बहुत सारे लोग है जो देख रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है यहां ।